यह एक जंगल है जंगल बहुत ही घना है बहुत सारे--

यह बस इस्टैंड है और यहाँ पर कई बसें खड़ी हैं।

ये अच्छी है जगह भी साफ सुथरी है जिसके बगल में एक तालाब नजर आ रहा है।